सामने बहोत सारा पानी भरा हुआ है।

बहोत सारी महिलाओं ने लाल गुलाबी रंग के अलग अलग साड़ी पेहनी हुई है बहोत सारा पानी भी सामने भरा हुआ नजर आ रहा है।

इनके पास ड्राइंग का कुछ सामान रखा हुआ है।

टेबल पर दो लाल रंग के रखे है साइड में एक डस्टबिन भी रखा हुआ है बहुत सारी स्कूटी खड़ी है दूसरी तरफ हरे पेड़ भी हैं।

लगे हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं उन सीढ़ीयो पर लाल रंग का कारपेट --

ये एक जंगल है। चारों तरफ हरे हरे पेड़ हैं।

ये एक कॉफी शॉप है यहां सामने देवाल पर--

उसके अंदर खाली मैदान में बहोत हरे हरे पेड़ है।